कई आइटम्स में सुनेहरी मूर्तियां भी है।

में और भी रंग बिरंगी डेकोर और नजर आ रहें हैं।

पीछे काले पत्थर वाले पहार हैं।

पानी गेहरे नीले रंग में चमक रही है।

राइट साइड पर पत्थरों के छोटे टॉवर्स बने हुएं हैं।

लेफ्ट साइड पर उनका उछला और छाटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है।

राइट साइड पर स्ट्रेट क्रैश बैरियर और यूटिलिटी पॉल हैं।

दूर में छोटे बिल्डिंग से भरा टाउन दिख रहा है।

पुरा दृश्य प्राकृतिक और कल्चरल लग रहा है।

इस पर गोल्डन ऑर्नामेंटल फ्लैगस लगे हैं।

बैकग्राउंड में हरे पेड़ और कुछ ब्रांचेज दिख रहे हैं।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

पूरा दृश्य एक शांत और प्राकृतिक झील का एहसास दिलाता है।

डिस्प्ले वाइब्रेट है और ओवर स्टॉक लग रही है।

पूरा व्यू बहुत ग्रीन और पीसफुल लग रहा है।

इस तस्वीर में कपड़ों की दुकान का इनसाइड व्यू दिख रहा है।

ब्राइट व्हाइट लाइट से शॉप चमक रही है।

दोनो तरफ हरी घास और छोटे पेड़ हैं।

रेड्रो मिशनो किप्ड माउंटेंस दिख रहे हैं।

आगे हरे घास और स्टेपिंग स्टोंस है।

लेफ्ट साइड पर वुडन चेयर डेक और टेबल्स भी हैं।

इस तस्वीर में एक कोज़ी वुडेन रूम दिख रहा है।

दीवार हल्की रंग की लकड़ी के प्लैंक से बनी है।

इस तस्वीर में एक गार्डन नर्सरी दिख रही है।

बाएं तरफ एक पानी का फाउंटेन है।

इस तस्वीर में एक सिंपल होटल रूम दिख रहा है।

विंडो के पास छोटी टेबल पर कप्स और डिशेज रखें हैं।

पेड़ों की लंबी शैडो जमीन पर एक पैटर्न बना रही है।

आगे स्टेयर की श्रीलिंग दिख रही है।

दीवार के पास एक छोटा ग्रीन बेंच और फूल का सजावट है।

बस के आगे और साइड में दो कार्स है एक वाइट और एक डार्क ब्लू --

इस तस्वीर में एक रोशन और सूरज भारा जंगल दिखाई दे रहा है।

बीच में बर्फ और जमीन है।

इस तस्वीर में एक बुड्ढे हुई जंगल की राह दिख रही है।

पीछे घना हरियाली से भरा पहाड़ है।

इस तस्वीर में एक छोटा आउटडोर मंदिर या शाइन दिख रहा हैं।

आगे का ग्राउंड स्टोन का है और गिला दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक ग्रोसरी स्टोर का रैक दिख रहा है।

पीछे पॉटेड प्लांट्स की शेल्फ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक रूम को दिखाया गया है जिनमें लाइट ब्लू वॉल्स और व्हाइट पिंक सीलिंग है।

दो विंडोज पर रेड व्हाइट फ्लोरल कर्टन है।

बेबों के पतले तने आगे हैं।

राइट पर पेट सप्लाईज का सेक्शन है नीचे बैंड केबिनेट्स है।

ब्रिज लकड़ी और रस्सी से बना है।

आगे हरी घास और पौधे हैं जो पानी तक जा रहे हैं।

नदी और शांत है और लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है।

इस तस्वीर में एक ऊंचा और जंगल से बड़ा पहारी दिख रही है।

कीनारे ऑरेंज कपड़े वाली रेलिंग और व्हाइट लाइट्स लगी है।

तरु प्रहरी मॉस और सूखे पत्ते हैं।

फ्लोर पर वुडनलैमिनेट या प्लैंक्स लगे हैं।